और काफी सुन्दर फूग्गो से सजावट दिखाई दे रही है।

में अ कुछ रेस्ट करने के लिए भी बना है पीछे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे --

वीवो लिखा हुआ है साइड में कुछ और भी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

गेट खुला हुआ है और ऊपर की तरफ अ रक्त कार्यालय ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा है जिस पर वेलकम टू टूरिस्ट कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्रा औरंगाबाद लिखा हुआ है।

और पदमावती बाइक वर्ल्ड दिखाई दे रहा है सामने की तरफ कुछ बाइक रखी हुई है।

सामने की तरफ एक अंकल एक रिक्शा जैसे लिए हुए है और वो अपना फोटो निखलवा रहे है पीछे की तरफ एक घर बना हुआ है।

इसमें साइड में ओरिओ लगे हुएं हैं और ऊपर की तरफ भी कुछ ओरिओ बिस्कीट रखे हुएं हैं।

और एक पेड़ लगा है जिसमें बिलकुल भी पत्तियां नहीं हैं।

ऊपर की तरफ अ बोर्ड लगा है जिसमे मैरी-क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर लिखा है।

ऊपर की तरफ इसमें बोर्ड लगा है जिस पर पंजाब एंड सेंड बैंक लिखा है गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अंडरटेकिंग --

इसमें अगर अपन को अ धुप लेनी हो तो अपन ले सकते--

अ सड़क के दोनों तरफ अ बोर्डेर बना हुआ है जिन पर गमले रखे हुए है।